और यहां पर अनेकों सारी चीजें भी हैं।

और यहां पर बहोत सारी चीजें और भी रखी हुई है और दीवारों का कलर --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

यहां पर अनेकों खिड़कियां लगी हुई है और यहां पर बहोत बड़े बड़े गेट भी लगे हुए है।

यहाँ पर एक टी_वी लगा हुआ हैं।

और यहां पर ईंटे भी रखी हुई है।

तारें भी है और यहां पर टाइलें भी लगी हुई है और यहां पर लाइटें भी लगी हुई है।

या यहां पर बैलून भी लगे हुए हैं।

ये यहां पर जालियां भी लगी हुई है।

और यहां पर बहोत अन्य सारी चीजे भी रखी गई है।

और यहां पर बहोत बड़ा दरवाजा भी है और यहां पर बहोत सारी चीज भी--

और यहां पर बहोत बहोत सारे पेड़ पौधे भी है।

यहां पर बहोत सारी चीजें रखी हुई है।

टेबल का कलर येलो और कॉफी कलर है।

और यहां पर बहोत सारे लोग भी हैं।